यहां पे एक रूम बनाया गया है जो कि पीले रंग और सफेद रंग से पेंट किया गया है।

यहां पे हर सामान को अच्छी तरह से सजा कर रखा गया है।

यहां पे बहुत सारे जूते चप्पल को अच्छी तरह से सजा कर रखा गया है।

इस मंदिर को बहुत अच्छी तरह से पेंट किया गया है।

इस फोटो में रेल की पटरी को दिखाया गया है जिसके ऊपर में मालगाड़ी को जाते हुए दिख रहा है।

एवं साइड में पेड़ पौधा भी है दिन का समय है।

काउंटर सफेद रंग का है।

यह एक होटल का दृश्य है यहां पे बहुत सुंदर तरीका से सजाया गया है।

सड़क के किनारे बहुत सारे भवन को दिखाया गया--

यह दुकान सड़क के किनारे में स्थित है।